ग्राउंड में कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं ।

पेड़ दिखाई दे रहे हे । कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

बिजली के तार दिखाई दे रहे हे एक लड़का ऊपर चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

नदी में पड़े हुए कुछ पत्थर नजर आ रहे है।